ये अह कुछ टी अह प्लास्टिक का शर्ट जैसे देखने को मिल रहा जो की ब्लू कलर का है। नीचे की तरफ खड़े है कुछ लोग और औरते और आदमी।

हम एक हॉ- बड़ासा हॉल को देख पा रहे जो की कलर व्हाइट कलर का है ऊपर की तरफ हमे कुछ फॅन्स और लाइट्स और स्टिकर्स जैसे कुछ अह बैनर जैसे देखने को मिल रहे जो की नीचे की तरफ ल्यांगिंग है।

और हमे दूसरी साइड भी कुछ स्टॉल्स और कुछ छोटे छोटे पॉकेट अह बूक्स देखने को मिल रही है और बच्चों की कुछ खिलौने नीचे की तरफ --

बॉक्स शेप में लगे हुए हैं वहां पर कुछ लाइटे भी लगी हुई है जो की काफी जल रही है नाइट विव होने की वजह से लाइटों का ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आ रहा है।

यहा हमे नजर आ रहे है कुछ बड़े बड़े पत्थर जो की रखे हुए जमीन पे और हमें कुछ पौधे नजर आ रहे है सुखी डालीया भी नजर आ रही--

और सामने रोड पे कुछ ख आदमी खड़े है ब्लॅक- ब्लॅक सी उनकी शॅडोवस आ रही है और पीछे की तरफ हमे कुछ समुंदर का पानी देखने को मिल रहा है। ऊपर खुला आसमान--

और हमे एक अ बाउंड्रीज भी नजर आ रही है सीमेंट की बनी हुई उसपे बने हुए कुछ डिज़ाइन--